कुछ लोग उसे बेच रहे है कुछ लोग देख रहे है कुछ लोग खरीद रहे है नीचे कुछ डब्बे रखे हुए है तीनो फुल बहुत सुंदर दिख रहे है ऊपर कुछ व्हाइट कलर की छत दिख --

और बोरों के ऊपर और निचे फूल दिख रहें हैं बहुत सारा ऊपर टीन शेड लगा हुआ है जो की पढ़ने में --

यह किसी कार्यक्रम का फोटो दिख रहा है जिसमे आग जल रही है कुछ उत्सव मनाया जा रहा है इसमे के लिए बहुत सारा लोग दिख रहे है आग से जलती पीछे लाइटिंग दिख रही है पीछे एक घर दिख रहा है।

यह एक बुक की शॉप दिख रही है जिसमें ऑनर खड़ा है जो पूजा-पाठ कर रहा है और आगे बहुत सारे भगवान की मूर्ति फ़ोटो लगी हुई है उसके अंदर पूजा और हार चढ़ाया हुआ है पीछे बहुत सारी बुक रखी हुई है ऑनर के पीछे एक कुर्सी रखी हुई है।

ऊपर बोर्ड लगा हुआ है उसमें एक व्यक्ति ने कुछ पकड़ के रखा हुआ है उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है और ऊपर एक टीन शेड लगा हुआ है।

यह किसी सब्जी मंडी का फोटो दिख रहा है इसमें एक व्यक्ति कुछ सब्जियां बेचते हुए दिख रहा है और पीछे वो कुछ फल फ्रूट भी रखे दिख रहे हैं उसके हाथ में एक फल दिख रहा है।

यह एक सड़क साइकिल लेते हुए व्यक्ति आ रहा है उसके पीछे कुछ बिल्डिंग बनी हुई है बिल्डिंग के ऊपर ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा हुआ है उसके नीचे दो महिलायें बैठी हुई हैं और व्यक्ति के साइड में बहुत सारी गाड़ियां दिख रही है और साइकिल दिख रही है।

इस बोरो मैं प्याज़ आलू और रखे हुए हैं | अंदर तोह एक किराने की देखे हुए हैं एक व्यक्ति कई बोरो के ऊपर बैठा हुआ हैंऊपर लाल कलर का बोर्ड लगा हुआ हैं ऊपर कुछ लिखा हुआ हैं।

किसी मार्केट का फोटो दिख रहा है इसमें बहुत सारी शॉप दिख रही है कुछ समान बक्से में बाहर रखा हुआ है कुछ बोरों में रखा हुआ दिख रहा है एक महिला के हाथ में रेड कलर की थैली दिख रही है।